यहाँ पे इश्श यहाँ पे चौक का तस्वीर इस फोटो में दिखाया जा रहा है और चौक एक बहुत बड़ा चौक है एक चौक का नाम थाना चौक है नाम भी जानते हैं और यहाँ पे चौबीस घंटा सारण पुलिस --

यहाँ पे इस तस्वीर में दिखाया गया है प्रखंड का दिखाया गया है तस्वीर यह प्रखंड कार्यालय का है यह सारन में पड़ता है यह प्रखंड बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से काम किया जाता है कर्मचारी बढ़िया ढंग से काम करते हैं।

और यहाँ बहुत बढ़िया प्रकार के फुल हैं जिसमें गजरा क हैं यहाँ फुल का व्यवस्था है गेंदा का है और बहुत ही प्रकार के फुल का बीज भी बहुत अच्छा बिसनेस है इसे शादी-विवाह में ले जा सकते --